सोफा कुर्सी टेबल डिनर टेबल और इत्यादि चीजें भी अच्छे दामों अच्छे क्वालिटी क्वांटिटी में मिलती है।

इस कमरे में दो हरी कुर्सी भी हैं कुर्सी के आगे दो स्टूल भी है।

रेलवे स्टेशन के सामने दो डस्टबिन रखी हुई है एक ब्लू कलर की एक हरी कलर की--

ये दुकान में जेंट्स और लेडीस दोनों के कपड़े मिलते हैं।

ये पंछी का दो पैर और इनका सर लाल कलर का लाल कलर का है।

यह मैदान देवघर के पास एक इलाके में इस्थित है।

यह एक होस्पिटल की तस्वीर है।

यह एक बोन केयर हॉस्पिटल है।

यह होटल के सामने एक टू वीलर खड़ी है।

यहां दो विद्युत की दुकान हैजिसमें से एक का नाम सी पी एल एस पी इलेक्ट्रिक्स है दूसरा का नाम ग्रेटव्हाइट इलेक्ट्रिक्स है।

यह एक आलीशान बंगले की तस्वीर है।

यहां पे लोग अपने समस्याओं को लेकर आए हुए--